ये किसी नदी का फोटो है जिसमें तीन नाव है नाव के अंदर पानी भी भर गया है।

खंभे भी इसके व्हाइट कलर के र रंगस पेंट से पेंट किया गया है।

ये किसी घर का पिक्चर है जो घर अभी बनी नहीं बनाया जा रहा हैं।

घर के मे काम चल रहा है जिसमें दो लोग काम कर रहे हैं।

ये कोई मुर्गी फार्म है इसमें बहोत सारी मुर्गियां हैं इसमें एक लाइट्स भी लगी है टायर भी टंगे हुए हैं।

ये किसी स्कूल का स्टेज लग रहा या किसी मैदान का स्टेज लग रहा--

मैदान अं के चारो तरफ दीवार भी लगी दीवार से घीरी गईं हैं।

ऊपर दो गाय भी दो गाय भी बंधी हुई हैं जिनके बछड़े हैं।

सड़क का फोटो लग रहा है सरक पे चार गाड़ी लगी है दो धक ढक चुकी है।

उधर पीले ड्रेस में भी और ऑरेंज ड्रेस में भी बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं।

बहुत सी दुकान है दुकान के अंदर काउंटर भी है काउंटर में बहुत सारे फोटोस लगे हैं।